सामने रोड है और रोड में एक रिक्सा है जो कि हरे कलर का है। रिक्शा के बगल में दो आदमी चल रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा हॉल है जोकि ब्राउन कलर से पेंट किया गया है और दीवाल में तिन पेंटिंग भी लगे हुएं हैं और ए --

जोकि तीन फ्लोर की है और आसपास में सीढ़ियाँ लगे हुए हैं।

बगल में ही बोहोत सारी मोटरसाइकले भी खड़ी है और एक गेट है जोकि ब्लैक कलर का है।